आप देख रहे है कितना अच्छा मन्दिर दिख रहा है और मन मन्दिर को सजाया गया है बहुत भीड़ है इसमे-इसमें और चीज़ करते है मन्दिर में पूजा करते है जो मन्नत मांगते है वो पूरा हो जाता है इसलिए मन्नत मांगी है वो अपना--